यहां पर कुछ व्यक्ति पेट्रोल डलवा रहे है और एक कार भी दिखाई दे रही है।

उस प्लेट का रंग व्हाइट है और जिसके ऊपर बहुत सारे पराठे रखे हुए जो कि आलू के बने हुए--

यहां पर बहुत सुंदर झरना बह रहा है और कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति खड़े भी दिखाई दे रहे हैं और एक बाइक भी दिखाई दे रही है।

और यहां पर एक मेज लकड़ी की मेज उपस्थित है यहां पर बहुत सारे पंखे रखे हुए हैं यहां पर बहुत सारे लाइटें लगी हुई है यहां पर शीशे का एक गेट लगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा बस स्टैंड है यहां पर बहुत सारी बसें खड़ी है।